यह कंप्यूटर का दृश्य है ब्लैक कलर के कंप्यूटर रखा हुआ है।

यह एक किराना दुकान के अंदर का दृश्य है तथा यहां लकड़ी के मदद से छोटे छोटे डेक्स बनाए गए हैं।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

यह एक किचन का दृश्य है तथा यहां पे बहुत सारे महिला और पुरुष काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अंदर में एक कार भी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर में है और शिशा भी इसके ऊपर है।

पर्दों का कलर गुलाबी है और रेड तथा यहां पे फूल का कलर रेड और वाइट और येलो है।

यहां पे एक महिला का कपड़े का कलर है गु आसमानी एंड उसका पैंट का कलर है गुलाबी।

नीचे फर्श पर बिछाए गए हैं जैसे ऑरेंज और रेड और भी कई प्रकार के चादर।

यह एक बहुत सारे हीरनो का दृश्य है तथा यहां पे सब हिरनो घास खाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हिरण का चार पर है और उसका ऊपर सिंह भी निकला हुआ है।

यहां पे बहुत छोटे छोटे घास फूस भी है ग्रीन कलर के और पीछे बहुत बड़े बड़े भी पेड़ है जो हल्का ब्राउन कलर के है।

इस ट्रैक्टर का चक्का दोनों आगे का छोटा है और पीछे का बड़ा है जिसका कलर है रेड और ब्लैक ।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

ऊपर बहुत सारे झंडे भी है जो रेड कलर के हैं और पीला कलर के है और गुलाबी कलर के।

यह एक रोड का दृश्य है तथा इस रोड में बहुत सारे बाइक दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर है और काफी गंदा है तथा उसका चक्का भी है जो ब्लैक कलर का है।

कपड़े पहने हैं गंजी का कलर काला और पैंट का कलर काला है।

अंदर में शेटर भी दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है।

एक ए_सी का भी दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और ब्राउन कलर का।